इसमें दो व्यक्ति नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ।

एक पुरुष एल्युमिनियम के सीढ़ी पर चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

इसकी सीलिंग पर बहुत से लाइटें लगी हुई दिखाई दे रही है।

कुछ कुर्सियां भी रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

एवं एक टेबल और कुछ चेयर भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

एवं दीवाल पर ए_सी एवं फैन लगी हुई दिखाई दे रही है।

लाल एवं काले रंग की दिखाई दे रही है।

उसके कपड़े का रंग हरा है और उसकी चुन्नी काले रंग की दिखाई दे रहे है ।

ए गो उस पर ब्लू रंग का बोर्ड लगा हुआ है।

जिस पर फूलों से सजावट की हुई दिखाई दे रही है।

एवं बहुत से लंबे लंबे एवं घने पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।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

उसी तरफ दुकान दिखाई दे रहा है।

उन दिवालो पर ऐ सी लगी हुई दिखाई दे रही है।